और ये किताबों की दुकान है जिसमें बोहोत सारी किताबे रखी हुई दिख --

और हमें यहाँ ऊपर टिन लगे हुए भी दिखाई दे रहें हैं। ट्रेन के ऊपर हमें चार पांच तार दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही जो अन्ग्रंथ सीढ़ियाँ हैं।

और ऊपर अ लाल कलर की पन्नी भी लगी हुई है।

एक लेडी और एक आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं।